ये एक डांस अकेडमी है जिसका नाम पेसक्रेटर्स डांस अकेडमी है यहाँ पर बच्‍चों को डांस सिखाया जाता है यहाँ पे दोनों टाईप के बच्‍चों को डांस सिखाया जाता है लड़का हो या लड़की हो आप देख सकते है और--

यहाँ पे ए आपको बहुत ही सुन्‍दर धूब वाली घास दिख रही है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं और भी बहुत अच्‍छी हैं।

यह एक दुकान है जहां पे आपको बहोत सारा देखने को मिल रहा है दुकान का नाम है अनुश्री इंटरप्राइजेस और यहाँ पे बहोत अच्‍छी अच्‍छा सामान दिख रहा है बाहर लाईटे लगी हुई हैं।

और वहाँ पे आपको एक ब्‍लू कलर की टंकी दिख रही होगी दो ब्‍लू कलर की टंकी एक आदमी बैठा हुआ है और जो शायद इस दुकान का ऑनर है।

इस फोटो में कुछ प्रोगाम टाईप का दिख रहा है बाहर पे बहोत सारी गाडि़यां खड़ी हैं अलग-अलग कलर की अलग अलग कंप अलग अलग कंपनीज की और यहां टेंट लगे हुए हैं इधर उधर।

ये तस्‍वीर एक पेट्रोल पंप की है जिसके आगे एक पेड़ लगा हुआ है पेट्रोल पंप का नाम एच. पी. पेट्रोल पंप है।

बीच में बहुत सारे ब छोटे-बड़े पत्‍थर भी दिखाई दे रहे हैं और आसमान में बादल छाये हुए हैं बहुत ही अच्‍छा लग रहा है ये और पानी भी बहुत सुन्‍दर लग रहा है।